फिर एक खड्डा दिख रहे है उसके आजू-बाजू दीवाल है गाड़ी के पीछे का अ-अ टायर काला दिख रहा है व्हाइट है प्लेट नंबर दिख रहा है दो छड़ है आसमान व्हाइट दिख रहा है।

इस चित्र में दो बोर्ड लगे हुए है उस बोर्ड पे कुछ लिखे से है दोनों बोर्ड पे लिखा हुआ है उसके आगे साइकिल दिख रही है दीवाल है।

दूसरे बाजू के गाड़ी में दो लड़के खड़े हुए है वो लाल कलर का है बोर्ड दिख रहा है फ़र्श बहुत साफ़ दिख रहा है दीवाले वाइट है और लाइटा दिख रहा है बोर्ड लगे सो है।

इसके आजू-बाजू लंबे-लंबे झाड़ है बहोत सारे घर हैं एक दीवाल है।